यहाँ पर एक बड़ी - सी कार खड़ी हुई है जिसका कलर रेड है जिसके ऊपर बहुत सारा साबुन लगा हुआ है एक आदमी उसको वॉश करता हुआ दिखाई दे रहा हैं यहां पर --

ये यहाँ पर बड़ी-सी दुकान दिखाई दे रही है जिसके नीचे दो ग्रीन कलर की शटर डलें हुए है यहां पर दो --

कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है। यहाँ पे एक आदमी बाइक को लेके अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे है। जिन्होंने ब्लू कलर के यूनिफार्म पहनी हुई है।